हरा कलर का कारपेट बिछा है और दो लोग माइक लेकर खड़े हुए हैं और साइड में--

ये किसी वर्कशॉप का फोटो है जिसमे काफी सारे लोग हैं और एक गाड़ी सुधारने वाला है।

ये दुकान के बाहर का फोटो है जिसमे दो लोग हैं और एक शर्ट पेहना हुआ है एक टि-शर्ट पेहना हुआ है। टि-शर्ट का कलर व्हाइट और ग्रे है और शर्ट का कलर व्हाइट है।

उसके बाहर ऑरेंज टी शर्ट पहने हुए और ब्लू कलर का कच्छा पहने हुए एक आदमी बाहर की तरफ देख रहा है।

के आगे बाइक खड़ी हुई है काफी सारे लोग होटल को देख राहे है।

उसके पीछे ऑरेंज कलर का डोरी लगी हुई है इस----

और एक उसके साइड में ग्रीन कलर से पोता हुआ एक बिल्डिंग साइड में और है।